और इसके आसपास भी बहोत सारी चीजे रखी हुई है।

लोग भी आए हुए हैं और यहां पे एक कंसर्ट के सामने है।